पाइप भी साइड में रखा हुआ है।

सामने की तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा है लाइटें लगी हुई हैं कुछ पीले रंग की पन्नी पड़ी हुई है।

एक बैठने के लिए लाल टेबल भी है ट्रेन की पट्टियाँ हैं यहाँ पर बहुत सारी--

पहने हुए एक लड़की ने लाल रंग की जैकेट --

खाली स्वीट्स लिखा है उस के पीछे एक व्यक्ति खड़ा है।

यहां खाली मैदान है पीछे की तरफ एक सफेद रंग की बिल्डिंग है मैदान में बहोत सारी मिट्टी पड़ी हुई है और कुछ बच्चे खड़े हुए हैं।

दूसरी साइड में हरे रंग का पेड़ नजर आ रहा है कुछ जानवर यहाँ पर लोहे के गेट के पास बैठे हुए है कुछ सफ़ेद रंग के हैं कुछ काले रंग के।

एक व्यक्ति खड़ा हुआ है इसके उल्टे हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है और गली में सफेद रंग की पट्टी लगी हुई है हाथ से अटैच कर के--

चलने के लिए जगह है और कुछ हरे रंग के पेड़ भी यहां पर लगे हुए हैं।